more on sed के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम उदाहरणों के माध्यम से कुछ more on sed commands सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
* ubuntu लिनक्स version 1204 operating system और
* gnu bash version 4224
ध्यान दें अभ्यास के लियए gnu bash version 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है
पूर्व आवश्यकताओं में
आपको लिनक्स terminal के मूलतत्वों का ज्ञान होना चाहिए
आप sed tool से परिचित होने चाहिए
सम्बंधित tutorials के लिए कृपया हमारी दर्शायी website पर जाएँ:
sed का प्रमुख उपयोग substitution यानी प्रतिस्थापन है
input में किसी pattern को अन्य से बदलना
अब पहले मूल file seddemo txt देखते हैं
ध्यान दें शब्द kumar चौथी line में दो बार और छठी line में एक बार आता है
अगर आप सब जगह kumar को roy से बदलना चाहते हैं
terminal पर type करें
sed space single quotes में s front slash/square bracket खोलें small k capital k square bracket बंद करें umar slash roy slash single quotes के बाद space seddemo txt
enter दबाएं
चौथी line पर ध्यान दें
सिर्फ पहली जगह में kumar roy से बदला गया है दूसरी जगह में नहीं
छठी line में kumar एक बार ही था और अब यह बदला गया है
अतः हम देखते हैं lines की केवल पहली प्रविष्टि ही बदली गयी है
ऐसा इसलिए है क्योंकि default रूप से किसी भी line की पहली मिलान की गयी प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गयी है
सारी मिलान की हुई प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने के लिए हमें flag g विकल्प प्रयोग करने की ज़रुरत है
अब मैं prompt clear करती हूँ
type करें:
अब चौथी line की दोनों प्रविष्टियाँ बदल गयी हैं
हम एक बार में भी कई प्रतिस्थापन कर सकते हैं
माना हम seddemo txt फाइल में शब्द electronics को electrical से
और civil को metallurgy से बदलना चाहते हैं
मैं prompt clear करती हूँ
type करें:
और enter दबाएं
आप देख सकते हैं कि शब्द बदल गए हैं
अब हम anirban anirban की stream computers से बदलकर mathematics करना चाहते हैं
इस स्थिति में हमें type करने की ज़रुरत होगी:
sed space single quotes में front slash anirban slash s slash computers slash mathematics slash g single quotes के बाद space seddemo txt
enter दबाएं
हम देखते हैं कि stream बदल गयी है
अब समझाती हूँ कि यह क्या है
पहले हम sed लिखते हैं फिर single quotes में हम वो pattern लिखते हैं जो बदला जाना है
यह anirban है
अब slash के बाद operation आता है
यह s है जिसका मतलब substitution है जैसा हमने पहले देखा है
फिर हम बदले जाने वाला pattern देते हैं जो computers है
फिर नया शब्द जो प्रतिस्थापित होगा वो mathematics है
हम file में lines को जोड़ने या मिटाने के लिए भी sed का प्रयोग कर सकते हैं
माना हम वो lines चुनना चाहते हैं जिनमें stream electronics नहीं है
इसके लिए हमारे पास d flag है
type:
enter दबाएं
विषयों को देखने के लिए type करें cat space nonelectronics txt
माना file की शुरुआत में हम एक line student information student इन्फॉर्मेशन जोड़ना चाहते हैं
इसके लिए हमारे पास i action यानी क्रिया है
हमें type करना है: sed space single quotes में 1i space student इन्फॉर्मेशन quotes के बाद space seddemo txt
और enter दबाएं
आप output देख सकते हैं
वास्तव में इस प्रकार हम कई lines प्रविष्ट कर सकते हैं
माना हम दो lines जोड़ना चाहते हैं हम उसी तरीके से यह करेंगे
student information student इन्फॉर्मेशन के साथ हम अगले साल के academics academics भी जोड़ना चाहते हैं
अतः इस स्थिति में हमें लिखना होगा:
enter दबाएं
string इन्फॉर्मेशन और 2013 के बीच slash n पर ध्यान दें
slash n 2013 को student इन्फॉर्मेशन के बाद अगली line में prints करता है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
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन
रिप्लेसमेंट यानी बदलना और
insertion यानी समावेश करना
नियत कार्य में वही text file seddemo txt प्रयोग करें
और name ankit को ashish से बदलने या प्रतिस्थापित करने की कोशिश करें
नीचे दर्शाये link पर उपलब्ध video देखें: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
इस mission पर अधिक जानकरी नीचे दिए link पर उपलब्ध है
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद